इस इमेज में मेरे को एक मकान दिखाई दे रिया है जे शायद दो मंजिला है एंड रोड के उस साइड है ऊपर से बिजली की लाइटें खींची हुई हैं।

एन्ड एक लड़का बैठा हुआ है नीचे --